इसमें बड़े-बड़े पहाड़ बने हुए हैं इनके ऊपर बहोत सारे पेड़ लग रहें हैं सामने की तरफ बड़े-बड़े घर बने हुए हैं इनके अन्दर लोग बेठे हुए हैं सैडियम बना --

ऐ बिच में एक बहौत बड़ा ग्राउंड बना हुआ है इसके अंदर कई सारे लोग हैं जोकि खेल रहै हैं आस-पास बहौत सारे बड़े-बड़े पेड़ लगे --